यह एक हॉल का द्रव्य है जहाँ बहुत सारे बेठने के लिए कुर्सियां रखी हुई है सभी कुर्सियां काले कलर की दिखाई दे रही है हॉल का फर्श बहुत ही साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है और उजले कलर का है।